यार ये तो यार अनार रखे हैं और संतरा रखा है केला रखा है सेब रखा है।

हां मोर है यार। कितना अच्छा लग रहा यार मोर ये। इसकी गर्दन देखो कितनी अच्छी लग रही है हरे हरे कलर की।

इतना बढ़िया लग रहा है यार। हम तो --

हॉस्पिटल है। ये पीछे का यार कितना अच्छा लग रहा है --

मेरा तो यार फोन भूल गया मैं तो विवो का फोन --

पता नहीं नारियल का पेड़ --

और इसमें चाय के साथ पराठे खाओ आलू का।

ये भी यार कितनी सारी बकरियां हैं यार ये।